और सामने यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं।

फिसलपट्टी बना हुआ है और यहां पे पेड़ है पार्क के बाहर भी पेड़ है और अंदर भी--

यह यहां पे हॉस्पिटल है जो कि यहां पे काफी चेकिंग वाले सामान--

और बड़े-बड़े पेड़ बड़े-बड़े पौधे भी हैं और चारों साइड यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जो कि बेहद खूबसूरत है।

यह इस्कू यहां पे स्कूल का कोई सामरोह रोज चल रहा है।

जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय भारती पब्लिक स्कूल बैनर में और यहां पे बच्चे--

यहाँ पे विश्वकर्मा जी की फोटो रखी हुई है और यहाँ पे बहुत बड़ा सामने कांच भी लगा हुआ है जो--

यह मिठाई की शॉप है जहाँ पे काफी मीठा आइटम हर प्रकार के मीठा आइटम यहाँ पे रखा हुआ है मिठाई है रसगुल्ले हैं लड्डू हैं।

फोर व्हीलर भी यहां पे चल खड़ी हुई है जो लगता है डूब जाएगी और एक आदमी यहां पे--

जोकी बहुत बड़ा लग रहा है उसके अंदर भी काफी कार रखी हुई है।

कुछ खड़े हुए हैं और कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको खाना दिया जा रहा है यहाँ पे कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं जिसमें से बुजुर्ग महिला पुरुष--

यहाँ पे जो सीढ़ियाँ मशीन वाली सीढ़ियाँ यहाँ पे बनी हुई है जिसमें लोग खड़े हो जाते है वो अपने आप ऊपर पहुंचा देती है।

दोनों साइड सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे एक छोटी सी कार खड़ी हुई है बच्चों वाली कार यहाँ पे खड़ी हुई है।

ये वो बना हुआ है जहाँ पे सारे वाहन रोक के उनका पैसा जो भी बनता है ओ पैसा यहाँ पे लिया जाता है जैसे रोड बनाते है।

ऊपर यहां पे चॉकलेट वगैरह टंगे हुए हैं लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ पे पैकेटों में रखा हुआ कुछ पता नहीं क्या रखा हुआ ट्रे में तो दो कप चाय रखी हुई है।

यहां पे ब्यूटी का पूरा यहां पे फोटो लगी हुई है।